बैंक के सामने एक बाइक खड़ी है बाइक के थोड़े ही आगे एक एक्टिवा खड़ी है और एक्टिवा के बिल्कुल बगल में कूड़ेदान है।